इस इमेज में मुझे एक हॉल दिखाई दे रहा है जिसमें परदे लगे हुए है सोफा लगा हुआ है कुर्सियां लगी है।

खंभे दिखाई दे रहा है तार दिखाई दे रहे है बॉउंड्री दिखाई दे रही है और बादल दिखाई दे रहा हैं।

इस इमेज मे मुझे एक दुकान दिखाई दे रही है जिसके पास बहुत सारे पोस्टर चिपके हुए है बी वो एयरटेल आइडीआ थ्री --